यह एक होटलें है होटल बहुत ही बड़ा है इस होटल में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे कमरे भी किराये में दिए जाते हैं ।

यह एक स्कूल है और यहाँ पे सरस्वती पूजा किया जा रहा है और सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के दिन किया जाता है सरस्वती पूजा को स्कूलों में बड़े धूमधाम से किया जाता है इसमें बहुत सारे बच्चे --

शरीर स्वस्थ रहता है मन शांत रहता हैऔर योगा करने से बहोत सारे फायदे होते हैं।

यहाँ पे शुक्रवार को इनके यहाँ एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है और यहाँ पर काफी भीड़ होती है।